चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान पूरा सफेद दिखाई दे रहा है। सुन्दर लग रहा --

सानी के कचरा पानी है। पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

ए बड़े मोटे हर साइज में लाइन से रखी हुई है एक के ऊपर एक करके आलू के ऊपर जो है ओ मट्टी दिखाई दे इसके छुणके भी है। वो थोड़ी मोटी परत की--

पैंट जींस की रैक से सजावट लगी हुई है।

अ ट्रेन का साइज भी बहुत बड़ा है।

सीलिंग का काम सा लखाई दे रहा है।

एक सीनियर दिखाई दे रहा है।

कर्टेंस भी लगे हुए हैं। कर्टंस का कलर जो है वो ग्रीन है।

नीचे की तरफ में बोरा भी दिखाई दे रहा है। सीमेंट का काम जैसे हो रहा है। व्यक्ति जो है गले में लगा कर रखी हुई है।

एक बोर्ड भी लिखा हुआ हैं।

जो बोट है वह दो रंग का है। पानी का दहाव भी बोहोत --

पीछे सब सामान है। डिब्बे में कुछ सामान रखा गया है। पंखा भी दिखाई दे रहे हैं और स्टील की रॉड भी--